और जहां पर बोहोत लोग सारे मतलब बैठे हुए हैं और--

और दिन के समय का जो फोटो है वो काफी अच्छी तरीके से इन्होंने मतलब--

देखने में जो ये पिक्चर है और इसमें मुझे पेड़ पौधे वगैरा भी दिखाई दे रहे हैं।

द हेयर क्लीनिकल अ सैलून फोर ऑफ़ आल लिख के फोटो है और नीचे अ सामने की ओर जो इन्होंने अ गेट की जो फो फोटो ली हुई है सामने जो गेट है।

देखने में जो --

इसमें मुझे एक भी पब्लिक दिखाई नहीं दे रही है।

साफ सफाई भी इन्होंने काफी अच्छे कर रखी है मुझे एक बड़ासा--

देखने में जो पिक्चर इन्होंने काफी करीब से खींचा है जिससे पिक्चर की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी से आई हुई है।

और मुझे पीछे एक ग्राउंड मे एक झूला भी दिखाई दे रहा है।

अ रोड पूरा खाली पड़ा रोड पर काफी प पब्लिक है।

और हॉल टाइप का जो अह है है वो देखने में--

पीछे एक कुर्सी और दो गेट ऊपर की लाइटनिंग इधर शायद बाथरूम है की शीशा है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है।

किसी एक शॉप की फोटो लग रही है जहां पर--

इस फोटो को देख के लग रहा है कि ये एक किसी अ घर की फोटो है यहां पर सामने--